इसका मैनेजर भी बहुत बड़ा आदमी है ऊ बहुत अच्छा इंसान हैं।

बहुत अच्छा कोचिंग है यहाॅं के टीचर जो हैं बहुत अच्छे हैं यहाॅं पे प्रैक्टिकली टेस्ट लिया जाता है स्टूडेंट को सप्ताह में --

इस डैम के पानी नहीं पीना चाहिए क्योंकि इसमें पानी में गंदगी भी है उसके ऊपर पुल भी है और देखने में काफ़ी सुंदर है।

बहुत इमानदारी से काम होता है बहुत अच्छी बिल्डिंग भी है ये देखने में काफ़ी सुंदर यहाँ हमेशा साफ़ सफ़ाई रहता है बहुत अच्छी बिल्डिंग है!

मूर्ति बहुत अच्छा है उ मंदिर भी बहुत अच्छा है देख यहाॅं हमेशा साफ-सफाई रहता है।

यहां पे बहुत अच्छा मिल्क है शुद्ध दूध मिलता है यहां पर दूध लेना चाहिए बहुत अच्छा खटाल है इस खटाल में --

सब ई सब किसी चीज का प्रचार कर रहे हैं बहुत अच्छा विद्यालय है ये यह विद्यालय हमारे दिखता है।

लग रहा है सजाया हुआ बहुत बढ़िया सजाया गया है यह मंडप बहुत देखने मे सुंदर लग रहा है।

फुल माला देता है फुल वुल सब का बिजनेस करता है बहुत अच्छा दुकान है ये --